कोई रेस्टोरेंट है जो बन्ने दी तय्यारी चय्यारी अंदर कंस्ट्रक्शन गया सोफा सेट दी सिटा गई हैं।

और डिज़ाइन किती गई है मूर्तियाँ नूं बनाया गया है असी वेख सकदे आ पत्थर दे नाल उन्होने घोड़े दी शेप बनाई गई आ थैले ओहनू वेख वसते बहुत ही सारे दर्शक आए हूए ने ते थैले--

आसे पासे पेड़ ही पेड़ हैंगे ने ते कुछ बच्चे साणु झुटे लेदे हुए वी नजर आ रहे हैं।

ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ हरियाली दई पूरा हो रखया एटमॉस्फियर दा पूरा वातावरण हरिया --

पूरे अपने दिमाग से लेके अपनी लाइफ के भविष्य बना सके।